यहां पे पीछे बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं और यहां पे दो जाली लगी हुई है।

यहां पे एक चारपहिया गाड़ी खड़ी हुई है और बहोत सारे पेड़ वगैरा खड़े हुए है।